बना हुआ है जो लाला रंग का है कांच के अन्दर एक आदमी पीले रंग का शर्ट पहना दिखाई दे रहा है।

और एक कांच का दरवाजा दिखाई दिया जिसपे लिखा हुआ--

और कुछ लाल रंग के गुलाब के फूल भी दिखाई दे रहे हैं कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही है।

कुछ लाइट जो पीले रंग की जल रही है एक पिंजड़ा दिखाई दे रहा है।

या पे कुछ छोटे छोटे प्लांट लगे हुए दिखाई दे रहे है एक कूलर --

लगे हुए दिखाई दे रहे है जो काले रंग में है और गमले दिख रहे है।

ये गमला दिखाई दे रहा है जहा पर रस्सी में बना कुछ लाइट लटके हुए है जेसे--

स्टैचू मूर्ति रखा हुआ दिखाई दे रह है कला रंग का कुर्सी दिख रहा है।

दे रही है जिसमे एक लड़की ने पीले रंग का कपड़ा पहना है एक लड़की ने कला रंग का कपड़ा पहना है।

ये छोटा सा बगीचा दिखाई दे रहा है जिसमे बोहोत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे है।

सफ़ेद काले में बने हुए दिखाई दे रहे है कुछ बड़े गमले लाल रंग के दिखाई दे रहे है।

बोल वाला लाइट जल रह अहै जो पीले रंग में है।

यहाँ एक बैंक है जहा बोर्ड पर लिखा हुआ है यूनियन बैंक --

यहाँ पर बोहोत सारे लड़के काउंटर पर के पास खड़े कुछ बुजुर्ग आदमी मुह्ह पर मास्क लगाये खड़े है।

एक टेबल दिखाई दे रहा है जिससे बोहोत साड़ी कॉपी किताबे--

अप कुछ नया आसमानी रंग का कपड़ा पहने दो आदमी दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा है और यहाँ पर फूलो से सजाया हुआ है जेसे हरा सफ़ेद--

पानी का बोटल रखा हुआ दिख रहा है बैग दिख रहा है एक आदमी जो सफ़ेद रंग का--

कुछ रखा हुआ दिख रहा है बड़े बड़े बोर भी दिख रहे है।